और सीढियां है बैठने के लिए और आस-पास घास लगी हुई है।

आस -पास बहुत सारे पेड़ है पहाड़ है और बहुत ही हरा-भरा सा दृश्य लग रहा है।

पीछे बड़े-बड़े मंदिर दिखाए गए हैं बादल इसमें बहुत सारे हैं और साइड में थोड़े से पेड़ है।

शादी का फंक्शन हो रहा है यहाँ पर कुछ औरतें खड़ी हैं एक दुल्हन बैठी है एक आदमी खड़ा है एक बच्चा खड़ा है।

मोबाइल पे बात कर रहे है और इनके कोच जो है इनके हेल्प कर रहे है शायद इनके पाव में कुछ चोट-वोट आई है।

एक क्लीनिक दिखाई दे रहा है वहाँ पर एक डॉक्टर बैठा है उसके पास बहुत सारे आदमी खड़े हैं औरत भी खड़े हैं उसके सामने टेबल रखा हुआ है।

और देखिए कैसे खुश लग रहे है और जो डेकोरेशन है वो मासाअल्लाह से बहुत ही खुबसूरत है।

और जो पीछे वो गेस्ट है वो भी देखिए अपना खा पी रहे है और बात कर रहे हैं और बहुत ही खूब खुश है सब लोग और ये डेकोरेशन तो माशा अल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं।

इसमें अ झूले लगे है और बच्चे इसमें झूले रहे हैं।